जो की सर्विस के लिए आई हुई लग रही है ये एक गैरेज दिखाई दे रहा है।

जिसमें काफी मजदूर हैं जो कि इस घर को बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

कार भी है और काफी अच्छा से डेकोरेट किया गया है ये हॉस्पिटल का फ्रंट साइड ।

इस इमेज़ में हमें एक बैंकट हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें काफ़ी डिफरेंट कलर की लाइट्स है।